यह एक होटल है जिसके पास कुछ समोसा और कुछ कचौड़ी रखे हुए हैं।

इसमें एक आदमी खड़ा है जो कि इसे बेच रहा है।

एक नदी बह रही है इसके अगल बगल दो चार पेड़ पौधे भी हैं।

यह एक शादी का गेट बना हुआ है।

इसके नीचे कुछ हाथी और और पीछे अन्य पेड़ पौधे उपस्थित हैं।

कुछ लाल रंग के फूल तथा कुछ नारंगी रंग के फूल तथा कुछ गुलाबी रंग के फूल और न जाने कितने अलग अलग रंगों के फूल--

ज्यादा सुंदर देखने में लग रहे हैं।

यहा एक बड़ी लंबी नदी है।

ऊपर कुछ कंकड़ से बना हुआ दीवार है।

इसके और ऊपर एक बड़ी सी बाउंड्री लगी हुई है।

यह एक जगह है जिसका नाम जिम है यहां

अलग अलग तरह के उपकरण देखने को मिलते हैं।

यहां पे कुछ लोग अलग अलग तरह के उपकरणों का इस्तेमाल कर अपने मसल्स को बिलड कर--

जो कि जे_बी रिजॉर्ट के नाम से जाना जाता है जिसका ऊपर नेम आप देख सकते हो जे_बी रिजॉर्ट लिखा हुआ।

यह एक पत्थर है जिसे हम मार्बल कहते हैं।

यह एक अलमारी है जो की काफी ज्यादा सुंदर दिखाई देती है।

यहाँ एक बड़ी लम्बी चौड़ी मैदान है।

यहां पे कुछ लाल और पीले फूल भी है।

जोकि अपनी मसल्स को तंदुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते--

यहां एक दो मंजिला मकान है।

यह नजारा एक रेलवे स्टेशन का है।